सोफा लगाए हुई है सोफे पे एक लड़की बैठी हुई है।

येलो कलर में हर चीज में सामान पैक कर करके रखा हुआ है।

और एक आदमी एक औरत है जो खड़ा होकर कुछ बोलने के लिए खड़ी हुई है।

रात का समय है बहुत सारी लाइटे जल रही है।

एक कार खड़ी है उधर बिल्डिंग है।

ये एक दुकान का पिक है जिसमें बहुत सारे सजावटी सामान भी रखा हुआ है गुड्डे गुड़िया रखे हुए हैं।

उधर एक प्लास्टिक का स्टूल रखा हुआ है।

बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है।

इस पिक में बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस पिक में हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जिसमें एक लाइन से मोबाइल रखी हुई है तीन खान्धे में रखी हुई है।

और वो डोर डोर जो बना हुआ है उसमें ग्लास लगा हुआ है।

प्लेट रखा हुआ है ग्लास रखा हुआ है।

इसमे बहुत सारी लाइटें भी जल रही है नीचे कारपेट बिछाया हुआ है।

पैदल भी जा रहे है गाड़ी से भी जा रहे है बाइक से भी जा रहे है।

हाई टेंशन वोल्टेज का तार भी ऊपर गया हुआ है।

चारों तरफ से सफेद कलर बाउंड्री लगी हुई है।